कोने में एक स्टील का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

में बहोत सारा पंख और ट्यूबलाइट्स भी लगा हुआ है।

हमको इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारा कार्टूंस भी रखा हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर फुटपाथ भी बिछा हुआ है।

बिल्डिंग के सामने एक स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है।

एक आदमी ने उसके गले पर हैंकी पहना हुआ है।

आस पास में बहोत सारा पेड़ पौधा भी उगा हुआ है।

जमीन पर बहुत सारे लोग भी योगा कर रहा है।

ऊपर में बहोत सारा डायपर्स भी रखा हुआ है।

दो औरत भी खड़ा है।

सामने में विनेगर और केचप का डब्बा भी रखा हुआ है।

दीवार पर बहोत सारे ट्यूबलाइट भी लगा हुआ है और पंखा भी लगा हुआ है।

हमको इस तस्वीर में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग के अंदर दो कुर्सियां दिखाई दे रहा है।

उसने सफेद रंग की गंजी भी पहना हुआ है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

सामने में मदर मैरी का स्टेचू भी ल लगा हुआ है।